कि यहां पे जमीन पे कुछ हरे भुट्टे रखे गए हैं।

और रैक पे कुछ पीले प्लास्टिक में रखी हुई समान--